ये हॉस्पिटल है और ये बाहर है।

ये है वाई.सी. इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा का शोरूम है जो अभी हाल ही मे खुला है गुब्बारे से सजाया गया है बैट्री रिक्शा प्रदूषण से प्रदूषण नहीं होता है खेलने मे आरामदायक होता है ।

और ये तालाब में पानी सुखा हुआ है ये बच्चे लोग क्रिकेट वगैरा खेलते हैं।